कांच की खिड़की लगी हुई है एक ओर ये लोहे की खिड़की भी लगी हुई है।

फूल लो फूल से वो सजी हुई मोर है पेड़ लगे हुए है।

बाइको का शोरूम है एक लाल कलर की बाइक खड़ी हुई है ब्लू कलर की बाइक है ब्लैक कलर की बाइक है फॉल्स सीलिंग है।

ए_सी लगी हुई है बॉटल रखी हुई है फाइल रखी हुई है टेबल लगी हुई है।

तलाव है पत्थर है छोटा सा पेड़ है बड़े - बड़े पेड़ है खंबा लगा हुआ है ।

हरी - हरी घास है चेयर रखी हुई है चेयर पे पिंक कलर का कपड़ा रखा हुआ है।